दो मेंस डॉक्टर्स दिखाई दे रहे है नर्स के पास भी कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई है नर्स जो है वो वाइट कलर कोर्ट में बैठी हुई है।

अ इस पिक्चर में मुझे एक गार्डन शो हो रहा है जिसके अंदर कुछ फुहवारे लगे हुए है फुहवारे के अंदर से पानी आ रहा है जिसका कलर --

अ इस टेम्पल का कल-- कलर भी पूरा वाइट है अ मुझे आस-पास उसके झाड़ियां दिखाई दे रही है जिनका कलर ग्रीन है।

ग्रीन जैकेट और इनकी सर पर वाइट कलर की टोपी भी शो हो रही है इनके हाथ में कैमरा है और पीछे की साइड मुझे एक दिखाई दे रहा--

अ उसके आस-पास मुझे नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे है इसमें समथिंग चार नारियल के पेड़ है।

एक लड़का दिखाईं दे रहा है जिसने वाइट कलर का शर्ट और पैंट ग्रीन कलर का शॉर्ट पहना हुआ है।

मॉल का कलर्स वाइट एंड डार्क चॉकलेटी कलर का शो हो रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक फ्रूट शॉप दिखाई दे रही है फ्रूट शॉप में एक सेलर भी खड़ा हुआ है सेलर ने--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

आ लड़के भी बैठे हुए है एक लड़के ने वाइट कलर का शर्ट पेहना हुआ है एक लड़के ने ब्लैक एंड वाइट चॉकलेट चॉकलेटी मै शर्ट पेहना हुआ है।

अ इसमें मुझे कुछ कपड़ो का ढेर दिखाई दे रहा है आ जिस जो वाइट कलर के मैच पे पड़ा हुआ है।

एंड इसमें जिस चेयर पर ऑडियंस बैठी है उस चेयर का कलर लाल है बाकि आस-पास में जो काफी सारी ब्लू एंड वाइट लाइटिंग दिख--

ये पिक्चर एक गार्डन का दिखाई दे रहा है जिस में काफी सारे फ्लावर्स है।

पहाड़ दिखाई दे रहे है उसी के आगे मुझे बालू-रेत दिखाई दे रही है मस्जिद के पास में एक और छोटा-सा क्वाटर बना हुआ है।

तालाब के पास से एक सड़क गुजर रही है इन सड़क के नीचे की साइड काफी सारी पेड़ और खाई दिखाई दे रही है।